यह कोई एक किराने का दुकान दिखाई दे रहा है।

घर के आसपास बहुत बड़ा गार्डन दिख रहा है घर के बाहर पत्थरों से एक फाउंटेन बनाया गया है।

इसमे एक कुर्सी भी लगा हुआ है।

इसमें पहाड़ दिखाई दे रहा।

जिसमें कुछ कार्स दिखाई दे रही हैं।

इसमें दोनों सवारी नव चालक भी बने हुए हैं।

इसमें और भी सामान नजर आ रहा हैं।

दो लोग दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों लोग रिसेप्शन पड़ खड़े हुए हैं।

यह एक दुकान दिखाई पड़ रहा है दुकान का नाम जेके एंटरप्राइजेस है।

के गले में एक लॉकेट भी दिखाई दे रहा है।

सड़क काफी पुराना हो गया है।

जिम में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहोत सारे जिम के सामान भी दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में बहोत सारे डंबल भी दिखाई दे रहे हैं दो पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

में एक साड़ी पहने औरत भी दिखाई दे रही है।

जो कि भैसों की मालकिन लगती है।

इसमें बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इसमें नीले आसमान दिख रहे हैं।

गार्डेन को बहोत सुंदर तरीके से सजाया गया है।

बाहर मौसम बहुत साफ दिखाई दे रहा--

सिंडी ओ के पास बहोत सारे पिलर भी दिखाई दे रहे हैं।

दूरी पे बहुत सारे पहाड़ भी दिखाई पड़ रहा हैं।

इसमें आसमान बहोत सफेद और नीले दिखाई दे रहे हैं।

इसमें रसोई घर भी दिखाई दे रहा--

दोनों लोगों की पोशाक पिंक कलर की है।

यह बच्चे अपने संस्कृति को दिखा रहे हैं।

बच्चा दिखाई पड़ रहा है जो की नीले रंग का शर्ट पहना इनमें तीन चेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं।